यहाँ पर आम के पत्तो से भी माला बनाया हुआ है।

आ आदमी रहते हैं एवं बहुत सारे --

यहाँ पर में नमकीन में है। चने गुजिया मिक्स चाट एवम --